जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां शॉप --

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां मुझे एक--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां एक नाकिया का वह पोस्ट डालने वाला दिखाई दे रहा है।

जैसे कि मैं इस फोटो में देख पा रहा हूं।

मुझे दिखाई दे रही है।

जैसे कि मैं इस फोटो में देख सकता हूं।